और बाहर में यहां पे बहोत सारे बड़े-बड़े पेड़ अ लगे हुए हैं जिसपे यहां पे येलो कलर का पत्ता उगा हुआ है यह पत्ता झड़-झड़ के यहां पे पूरे गार्डेन में गिरा हुआ है।

यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ दिखाई दे रहे है पहाड़ के ऊपर से ही कोई रास्ता दिखाई दे रहा है पहाड़ में बहोत सारी ग्रीनरी दिखाई दे रही है।

ये एक पहाड़ी घर दिखाई दे रही है जहाँ पे आ जिला निर्लय लिखा हुआ है टेहरी टेहरी लिखा हुआ है यहाँ पे आ कोई फ्लैग लगी हुई है घर के ऊपर |

बाहर में एक बाइक दिख रहा है जो यहाँ पे ब्लू कलर का है और यहाँ पे एक गाड़ी भी दिख रही है जो ऐश रंग की है और यहाँ एक बाइक का हेंडल दिख रहा है जो काले रंग का है।

ये घर बहौत सुन्दर है यहाँ पे बहार में बहौत बड़ा सा यहाँ पे गार्डन किया हुआ है यहाँ पे बहौत ऊँची सीडी दिखाई दे रही है।

आ यह गार्डन में बहुत बड़े-बड़े से पेड़ और बहुत कॉर्फूल यहां पे पौधे लागे हुए हैं दूर में यहां पे पहाड़ दिखाई दे रहे यह घर का रंग यहां पे सफेद है और बाहर में एक गाड़ी दिखाई दे रही है सफ़ेद रंग की।

कलर की है यहाँ पे लैडर रखे हुए हैं और यहाँ पे जिम जिससे करता है वो सब रखे हुए हैं यहाँ पे ग्रीन कलर का कारपेट बिछा हुआ है बहोत सारे यहाँ पे लाइट्स जल रहे हैं।

एक होटल है जो हा यहां पे दा म मनार बोल के लिखा हुआ है इसका एक बहुत बड़ा-सा गेट है यह होटल ग्रीन और वाइट कलर की है और इसके बाहर में यहाँ पे अ-अ शेड बना हुआ है।

यहा पे एक बहोत बरी सी प-प पेर है आ जो यहा पे अ इसका बहोत मोटा सा रुट है।

का बोहोत सुन्दर है यहाँ पे बोहोत सारे पा-पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे बोहोत सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं कुछ पेड़ यहाँ पे येलो क --

पीछे में बहुत सारे यहाँ पे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे पेड़-पौधे दिखाई दे हैं यहाँ पे एक डस्टबिन रखा हुआ है जो रैबिट इस्पे बनी हुई है।